यहां में टाइल्स का फैक्ट्री दिखाई दे रहा है।

पीछे में पेड़ पौधा भी निकल रहा है।

किला के लिए लोहा का पोस भी दिखाई दे रहा है।

घर का सामने में बच्चा लोग का फेस दाग के है।

घर को बंबू से बनाके हे।

ये बेलूंस अह वाइट और रेड कलर में है।

यहां मैं एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

खिड़की का ऊपर में एक घड़ी भी दिखाई दे रहा है।

पीछे में एक औरत लड़की भी दिखाई दे रहा है।

यहां में एक घर दिखाई दे रहा है।

यहां में लंबा वाला ब्रिज दिखाई दे रहा हैं।

ऊपर में वायर भी दिखाई दे रहा है।

में बैलून लगा हुआ है।

ये रस्ता का साइड में एक बोर्ड लगा हुआ है लाल कलर का।

वो लोग को फेस को भी ढक के है।

यहां में सोफा रखा हुआ है।

लड़का लोग का फेस को ब्लर दिखाई दे रहा है।

पर में डेरी पार्लर लिखा हुआ है।

बिल्डिंग का सामने में बहोत सारा गाड़ी दिखाई दे रहा है।

रस्ता का साइड में एक स्कूटी ब्लू कलर भी दिखाई दे रहा है।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

यहां में बहुत सारा कुर्सी रखा हुआ है।

पर में लंबा लंबा फैन दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा चश्मा झूला के हैं।

रस्ता में एक ट्रेन भी जा रहा है।

ट्रेन का अंदर में दो आउटडोर भी दिखाई दे रहा है।

एक कारपेट भी रखा हुआ है।

बीच में एक सोफा रखे है।

पानी का पीछे में दो गारी भी दिखाई दे रहा है।

मिट्टी में लंबा वाला पत्थर भी दिखाई दे रहा है।

ये बैलूंस व्हाइट और ऑरेंज कलर में है।